सामने गेट ग्रिल का है।

बेंच पर भी फूल के पॉट्स हैं और पेड़ लगे हुए पौधे लगे हुए हैं।

यह एक दुकान का शेल्फ है जहां कुछ मशीनें रखी हुई है।

यह तस्वीर एक स्कूल का है जहां बहोत सारे विद्यार्थी अपने असेंबली लाइन में खड़ी है।

यह फोटो देख के लग रहा है कि यह एक प्ले स्टेशन का फोटो है।

यह फोटो एक छोटे से नदी के बगल का है जहां लोगों ने एक घर जैसा बनाया हुआ है।

जंगल बहोत ही घना है।

यह एक खूबसूरत सा नजारा है जहां एक सड़क है इलेक्ट्रिक के पोल है और बड़े बड़े पेड़ हैं।

रॉयल एनफील्ड का बाइक बहुत ही मशहूर है।

बहोत ही खूबसूरत नजारा है।

पेट्रोल और डीजल के दोनों अलग अलग काउंटर हैं।

कुछ लोग बैठे हुए है और गुरुद्वारे को सजा दिया गया है बैलून से।

इस तस्वीर में दो बसे खड़ी हैं।

यह एक रास्ते की तस्वीर है जिसमें कुछ दुकान दिख रही हैं।

जिसमें कुछ स्लाइड भी हैं।

यहां से बहुत लोग गुजर रहे हैं कुछ अन्दर जा रहे हैं कुछ लोग बाहर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में बहुत सारे दुकाने भी हैं।

अंकल मिठाई बिक्री कर रहे हैं हवा मिठाई।

इसका मालिक शर्मा ऑडियो के नाम से जाना जाता है।

कांटेक्ट नंबर भी लिखा हुआ है सामने तस्वीर में बोर्ड देख सकते हैं।

यह एक मिठाई की दुकान का तस्वीर है।